एक हाफिज साहब बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं मदरसा बहुत सुंदर है।

सब बच्चे कित्ते प्यारे लग रहे हैं कुरान पाक पढ़ते हुए।

लटकने वाले झूले पे लटक रहे हैं। दो आदमी सामने से आ रहा है। पीछे खूब सारे पेड़ है।

ध्यान रखा जाता है इस बिल्डिंग में--

खूब भीड़ है। पब्लिक आ रही जा रही है। सामान खरीद रही है।

यह मेमाइल बेच रहा है दुकान अच्छी और सुंदर लग रही है देखने से--

ये एक क्लासरूम है यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सभी बच्चों ने अब ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई--

ये एक मैदान सा लग रहा है पीछे एक कारखाना सा बना हुआ है।

बिना जीए डिजिटल प्लस का पोस्टर लगा हुआ है आसमान में बादल छाए हुए हैं हल्के फुल्के।

ये एक कैंटीन जैसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग--

करने के लिए बढ़हाने के लिए घटाने के लिए--

स्प्लीच पे कालीन भी बिछा हुआ है। डीवा दिवारे हल्की--

ये एक औस्पेस रूम लग रहा है कंप्यूटर पर कुछ फाइल्स तैयार की जा रही है।

कत्थी कलर की रेड कलर की चेयर है और पीछे कुछ--

ये एक शादी का फंक्शन लग रहा है एक बच्ची हाथ में कुछ लेकर खा रही है।

ये एक चायन पुराना रेस्टोरेंट लग रहा है पुराने ओल्ड जमाने--

इसमें येलो और पिंक वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स लगाए हुए हैं।

लगता है इसका अभी अभी उद्घाटन किया गया है।

ये एक पार्किंग रोड लग रहा है यहां पे खूब सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

कबड्डी का में खेल चल रहा है कुछ--

इसके गले में रस्सी भी बंधी दिखाई दे रही है रेड कलर की भी रस्सी बंधी हुई है घस का बच्चा बहुत --

यहाँ पर घर बनाने का काम चल रहा है ये बहुत सारा सीमेंट पड़ा हुआ है मालवा का--

सामने एक ऑटो जा रहा है एक चाय की छोटी सी दुकान भी है --

पीछे किताबों की दुकान पर खूब सारी किताबें रखी हुई--

शोरूम है यहाँ पर सिंक नल वगैरह का सामान मिलता है टॉयलेट्स वगैरह--

ये एक पार्क है यहाँ पे कुछ बेंचेस लगी हुई हैं बेंचेस का कलर है।

ये सर्दियों में बर्फीले इलाका पूरा बर्फ से ढक जाता है।

ये एक शादी का माहौल है कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ बैठे हैं।